पिक्चर को देख कर हम यहाँ देख सकते है की यहाँ पर बहुत ही बड़ा-बड़ा सामन रखा हुआ है जो की पानी भरने के काम मैं या इत्यादिक कामो मैं आ सकता है यहाँ पर एक छोटी-छोटी शीशे की कढ़ाई भी रखी हुई हैं।

तस्वीर को देख कर हम यह कह सकते है की यह एक बोत ही सुंदर सी तस्वीर है जो की काफी अच्छी लग रही है यहाँ पर एक--

पिक्चर को देख कर हम ये कह सकते है की यह एक कोफ़ी है मौसम सुहाना है और बादल काफी छाये हुए है इसके वजह से कोफ़ी पिने का मन कर रहा है कप का क कलर लाल रंग का है।